नीचे बहोत सारा अलमारियां भी है।

यहां पे कुछ खाने वाला सामान टांगा हुआ है।

यह एक रूम है इस रूम में बहुत सारा जिम वाला मशीन दिखाई दे रहा है।

बहोत सारा आदमी लोग भी दिख रहे हैं।

यहां पे बगल में पेड़ भी है।

इस दुकान में बहुत सारा अलमारियां लगाई गई है।

यहां पे बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस मकान में सीढ़ियां लगाई गई है।

बगल में शीशा भी लगाया गया है।

यह एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है।

यहां सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

आदमी के हाथ में एक आयरन है।

वहां पे दो मशीने है।

यहां दो आदमी लोग भी है।

इस बिल्डिंग में गेट भी लगा हुआ है।

चौतारा पर आदमी बैठे हुए हैं।

गोले गोले सामने पहाड़िया भी है।

यहां एक गोल चबूतरा है।

इस चबूतरा पर दो मूर्तियां बनाई हुई है।

यह एक फल की दुकानें हैं।

यहां बांसे बहोत सारा दिख रहा है।